एक बोहोत ही बड़ा मस्जिद है जो की इस मस्जिद को बोहोत ही बड़ा बनाया गया है।

स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेयर है जो की --

ये एक जिम ट्रेनर है जो की यहां बोहोत ही अच्छे से जिम को कराते हैं और हमलोग जिम करने के लिए यही जाते हैं और बोहोत लोग आते हैं जिम करने के लिए ।